इधर चारो साइड में ये गुलाब का वृक्ष है छोटा-सा दिख रहा पौधा --

पीला कलर का बस लगी हुई है और इसके बगल में यह झंडे झंडा गाड़ने के लिए एक --

यहाँ पर दो बस आ रही है एक ही के साइड से ।

ये एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में --